यही एक दुकान है दुकान में बहोत सारे सेल्फ लगे हैं सेल्फ में बहोत सारा सामान रखा है।

यह एक गार्डन की फोटो है गार्डन में बहोत सारे हरी भरी घास उगी हुई है।

स्ट्रैचर व्हाईट रंग का है ये लोहे का बना हुआ है इसपे एक नीले रंग का गद्दा पड़ा हुआ है नीचे एक--

कूल के बाहर की ग्राउंड की फोटो है सामने स्कूल की बिल्डिंग का रंग व्हाइट है बहुत सारे पिलर लगे हुए हैं।

वहीं बिल्डिंग थोड़ी स्किन पीच रंग की है।

नेस्कैफे और बहोत सारे कॉफी के बीच की फोटो बनी है।

वो भी पेट्रोल वाला ही लग रहा है।

कमरा है कमरे में एक स्ट्रचर रखा है।

झरने का पानी बहोत जोर से नीचे गिर रहा हैं।

यह एक टेबल है टेबल पर एक लहंगा पड़ा है।

बिल्डिंग की फोटो है जहां पर एक साथ दो से तीन दुकाने--